पानी बहुत सुंदर लग रहा है पेड़-पौधा अच्छा लग रहा है मकान सब बहुत अच्छा लग रहा है।

आ नीचे गीटी रखा हुई है नीचे उजला उजला गिटी का पूटी है मजदूर सब ढो ढो के टरक मे रख रहा है --

आसमान सफेद लग रहा है बहुत सुंदर देखने में लग रहा है।